इस पर लिखा है की यहां पैसे जमा करने निकालने और नया खाता खुलवाने का काम होता है।

यहां सरकारी कागजात बनवाने जैसे आय जाति या निवास प्रणाम पत्र और राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के सभी काम भी किए जाते हैं।

ये किसी राशन या दवाई दुकान जैसा दिख रहा है।

ये एक छोटी सी किराने शॉप है।

पुरी दुकान में अलग अलग तरह के खाने पीने का समान रखा हुआ हैं।

शेल्फस पर शैंपू बिस्किट सॉस और दूसरी चीजें दिख रहे है।

इस तस्वीर में एक पेट्रोल पंप दिखाए गए हैं।

और वेदर बड़ा साफ लग रहा है और धूप भी काफी है।

एक खुला मैदान दिख रहा है जो पूरा हरे घास से भरा है।

मैदान के पीछे एक बड़े बिल्डिंग दिख रहे है।

जमीन पर लोगों के बैठने के लिए हरी पट्टीयां बिछाए गए हैं।

और यह देखने में बहुत डिलीशियस लग रहा है।

इस तस्वीर में बहोत सारे लोग एक मैदान में इकट्ठे हुए हुए दिखा रहा है।

ताकि उन्हें ठंडी ना लगे और एक दूसरे के साथ बात भी कर रहे हैं।

इस तस्वीर में एक पुराने किले का खंडर दिख रहा है।

प्लेट में चार पीले रंग का टुकड़े हैं।

इनके नीचे का हिस्सा एक चमकदार पन्नी से लपेटा हुआ है।

और इस ट्रेन के आसपास झाड़ियां भी दिखाया गया है।

पेड़ पौधे है और इस ट्रेन का रंग लाल नीला पीला लगता है।

ये मैदान कच्ची जमीन का है और धूल भरा लग रहा है।

इस तस्वीर में कुछ लोग झरने के पास इंजॉय करते हुए देख रहा है।

एक लोग बैठे हुए हैं और दूसरे लोग ऊपर खड़ा हुआ है।

एक ने लाल रंग का टी शर्ट पहना है दूसरे ने पीला और तीसरे ने ऑरेंज कलर का --

और एक ने पहना है पिंक वो बहोत अच्छा लग रहा है।

इस तस्वीर में आइडिया का एक ऑफिस या स्टोर लग रहा है।

एक लड़का चेयर पर बैठा है जिसके चेहरे पर ब्लर किया गया है।

ये किसी गोडाउन या स्टोरेज स्पेस का इंटीरियर दिख रहा है।

पूरा रूम कंपार्टमेंट या शेल्फ से बरा हुआ है।

जो शायद डॉक्यूमेंट या बॉक्सेस रखने के लिए है।

मंदिर के ऊपर छोटी छोटी गुंबद बना हुआ है।

ये तस्वीर कोई वेडिंग वेन्यू का एंट्रेंस लग रहा है ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा है सुखदेव पैलेस--

पेर दि पेर पौधे देख रहे और छोटा सा हील या पहाड़ भी दिख रहे है।

इसमें एक सिंगल बेड है बेड पर प्रिंटेड चादर और तकिया भी है।

जिसके ऊपर एक बच्चे चढ़ रहे हैं और दूसरे उसके कान को पकड़ रहे है।

बड़े लोग इन दोनों को खिलाने के लिए खड़े हुए हैं और यहां पर पानी भी दिखाए गए है।

दुकान के दरवाजे और सामने का हिस्सा शीशा का बना हुआ है।

शीशा पर लिखा है कि यहां बिल का भुगतान किया जाता है।

ये एक दूरदर्श सेवा केंद्र लगता है।

यहां दो पहियों और चार पहियों दोनों तरह की गाड़ियां हैं।

यहां पर कुछ पूजा चल रहा है।

और यहां बहुत सारे लोग भी दिखाए गए है।

इस तस्वीर में सात आदमियों ने सफेद रंग का कपड़ा पहेन पेहना हुआ है।

और देखने में लगता है ये लोग कुछ पूजा करके बैठे है।

इस तस्वीर में बहोत सारे बच्चे छात्र एक क्लास में पढ़ते हुए दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक कपड़े की दुकान के अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में एक शांत झील या तालाब दिख रहा है।

आसमान बादलों से भरा हुआ है जिसका प्रतिबिंब साफ साफ पानी में नजर आ रहा हैं।

और ये लोग लक्ष्या इंटरनेशनल अकैडमी स्कूल पे राजस्थानी कपड़े पहन के नाच रहे है।

और इसमें एक लड़की ने लाल कपड़ा पहना है और दूसरी लड़की ने सफेद।

इस तस्वीर में एक खाने पीने की दुकान दिखाई गई है।

दुकान को लाल सफेद और नीले गुब्बारों से सजाया गया है।

दुकान के बाहर बहुत सारे दो पहि पहिए वाले गाड़ियां भी रखे गए है।

पानी भी दिखाई गए है ये पानी का रंग थोड़ा सा ब्राउन लग रहा है।

पार्क में हरे भरे पेड़ और झाड़ियां भी दिख रहे है।

इस तस्वीर में एक दो मंजिल की इमारत दिख रहें हैं।

पेड़ लगे है आसमान में बादल छाए हुए हैं।

और यह दृश्य किसी शांत और प्रत्येक जगह का लग रहा है।

इस फव्वारे के बीच में एक लंबा स्तंभ है और ऊपर से पानी चारों तरफ बाहर निकल रहा है।

ये फोटो एक ब्यूटीफुल सी साइड पार्कवे का है।

इस तस्वीर में किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप का अंदर का दृश्य दिखाया गया है।

इस तस्वीर में किसी बड़े बिल्डिंग दिखाए गए है बिल्डिंग के आगे पक्का रास्ता बना है जो सीधा उस तक जा रहा है।

दोनों तरफ पेड़ और हरियाली दिखाई गए हैं।

बिल्डिंग का डिजाइन मॉडल लग रहा है और ये एक गवर्नमेंट ऑफिस या म्यूजियम हो सकता है।

ये गुब्बारे देश के झंडे का रंगों में है।

इसके सामने एक ग्लास चेयर भी दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बड़े मंदिर के पास बहोत सारे लोग एक लंबी कतार में खड़े हैं।

काफी लोग नीचे बैठकर फूल बेच रहे है और खरीद रहे है।

एक आदमी सफेद शर्ट में स्माइल कर रहे हैं।

इस बुक स्टोर के आगे दो आदमी बैठे हुए दिखाए गए हैं।

पीछे की तरफ प्रामी बुक सेंटर का बोर्ड है वो शॉप के सामने लगा हुआ है।

इस तस्वीर में एक आदमी पीले शर्ट और ब्लू जींस में सीधा एक ब्राउन गेट के तरफ चलता हुआ दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक पार्किंग एरिया दिखाए गए है।

एक साइड पर पेड़ पौधे लगे है और दूसरी तरफ गाड़ी पार्क किए है।

जैसे यहां होली जैसा कोई त्यौहार मनाया गया है।

एक बड़ी सा गहरा नीले रंग का कपड़ा ज़मीन पर फैला हुआ है।

ये कपड़े बहुत चमकदार और खूबसूरत लग रहा है ये किसी दुकान या घर में कपड़ों का संग्रह लगता है।

नदी के किनारे पर पुराने घर बने हुए है।